हाथ में चाकू है पीछे पेड़ है।

छोटे - छोटे हरे घास है मशीन है।

प्लेट है प्लेट के अंदर --

गेट पर जो है ब्लू रंग का पेंट --

समाने पहाड़ है पहाड़ पे पेड़ लगे हुए है ।